और दो टू नाग साप है ब्लैक कलर का और बीच में सूर्य भगवान जी की फोटो है।

और साइड मे एक ठो और रेड कलर का एक ठो झंडा गढ़ा हुआ है।

यहां पर येलो कलर के साइन बोर्ड में लिखा गया है कि होटल हैदराबादी --

बड़ा हुआ है पानी का रंग माटिया कलर है और चारों तरफ गछ ही गछ है।

एक बांस गड़ा हुआ है और रेड कलर का झंडा लगा हुआ है और बहोत सारे लोग--

है एक बड़ा सा गेट है ब्लू कलर का पीछे पेड़ है।

कलर ड्रेस पहना हुआ है और एक आदमी ब्लैक कलर का ड्रेस पहना--

और साइड में गेट हैं गेट में कपड़ा सुख गया है और ऐ_सी हैं और--

ब्लैक कलर का है और उसमें एक रेड कलर में लिखा गया है ई --

ये बिक्री हो रही बड़ा सा गेट है और बड़ा सा पाउच है और बाहर गाड़ी है और दूसरा आदमी बैठे हु--

और लाइट व्हील बहोत सा लंबा लंबा है और पेड़ भी है और लोहे का--

और स्काया कलर के एक टेबल है और दीवाल के कलर ग्रे कलर है।

और साइड में एक स्विच बोर्ड है और तार गया हुआ है।

और नीचे ब्लैक कलर का मार्बल लगा हुआ है और ऊपर अलबेस्टर लगा हुआ है।

ये एक एच_डी_एफ_सी बैंक है ऊपर में ग्रीन कलर का बिल्डिंग है।

और बहोत सारे स्कूटी बाइक हैं रोड पे अ ये एच_डी_एफ_सी बैंक है।